और एक व्यक्ति बाइक के पास खड़ा हुआ है। एक छोटा बच्चा भी दिख रहा है। बैंक का चैनल गेट खुला हुआ है एक तरफ से।

एक दरवाजा बड़ा है और एक दरवाजा छोटा दिख रहा है।

फूल भी लख- रखे हुए हैं कुछ गुलाब के फूल रखे हुए हैं।

और यह सफ़ेद रंग का है। पास ही में पिलर कुछ बिना रंग के ही रखे गये हैं।